काफी सारे आदमी यहाँ पे अपने वजन को कम कर --

यह कार्यालय अरेंज डेटा के हैं। यहाँ --

कार्यालय अपर आयकर आयुक्त डेटा रेंज डेटा के हैं।

यह एक नदी है। यह नदी काफी चौड़ी है। नदी के साइड में बोहोत सारे घने --

यह एक सलून है। यह सलून बहोत बड़ा है। यह सलून मे बहोत सारे आदमी बाल कटाने के लिए दाढ़ी बनवाने के लिए सलून मे आते हैं। सलून में तरह तरह की --